ये कोई पार्क जैसा लग रहा है।

जिसमें खेलने के लिए स्लिप स्लीपर बना हुआ है।

यहां पर कोई घर का निर्माण हो रहा है जो घर काफी बड़ा बना रहा है और --

यहां पर आफिस का साइन बोर्ड भि लगा हुआ है और कई आदमी है जो दो चार आदमी जो गेट के --